गेट पर एम_एस_एम_एन एजेंसी लिखा हुआ है।

ऊपर वाले फ्लोर पर वॉल के ऊपर एन ई बाइट लिखा हुआ है।

मिट्टी भी दिख रहा है।

पेंडल भी है जिसका रंग सफेद है उसका सामने में स्कूटर भी--

बहुत सारे चेयर भी है जिसपर इंसान बैठा हुआ है।

इसके ऊपर एक पोडियम भी है।

बहुत सारे डेस्क भी है।

नीचे में काला रंग का चेयर भी है।

ऊपर का लाइट्स भी दिख रहा है।

हॉस्पिटल के बाहर बोर्ड भी लगा हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारे जिम का सामान दिखाई दे रहा है।

ऊपर में एक बोर्ड है जिस पर लहालगन पुलिस स्टेशन लिखा हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे कैरम बोर्ड दिख रहा है।